वाटर पार्क की राइड्स का कलर नीला हरा एवं पीला दिखाई दे रहा है।

दुकान का फर्श का रंग सफेद है एवं शेल्फ का रंग भी सफेद है जहां पर ढेर सारा सामान देखा जा सकता है।

आसमान साफ है जिससे यह दिन के समय की ली गई एक तस्वीर लगती है।

इसकी दीवारें पीले रंग की है जो कि समय के साथ इनका रंग उतर चुका है।